पीला कलर का पेंटिंग किया हुआ है और सीसा लगा हुआ है और बाहर मे बाइपस रोड है बगल मे और कुछ वहाँ पे पेड़ पौधे है।

यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है जो की पहाड़ों के बीच मे मंदिर है और मंदिर के बाहर कुछ पौधे लगे हुए हैं उसको घेरा हुआ है।